औरत और एक आदमी दिख रहे हैं।

रखी दिखाई दे रही है।

एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है।

और इन डब्बो का जो कलर येलो दिखाई दे रहा है।

चीजें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

ये कुछ समान नीचे रखे हुए--

है और एक आदमी ने रेड कलर की--

दे रहे हैं जिसमें सी से भी--

एक बच्ची भी दिख रही है और पीछे पेड़ भी है।

और यहाँ सामने गाड़ियां भी है।

यहाँ पर मुझे एक पोस्टर दिखाई--

ऑरेंज दिख रहा है और अंदर जाने के लिए--

यहाँ पर मुझे--

और अंदर मुझे--

यहाँ मुझे ब्लैक कलर में--

लोहे की चीजें दिखाई दे रही --

ग्रीन कलर का--

पहनी है।